साई मेडिकल एण्ड प्रोविजन स्टोर दिखायी दे रहा है जहां प्लस का साइन बना हुआ है बगल में कुछ पिक्चर्स लगे हुए है एक सटर बन्द है रैलिंग है ऊपर छत के।

यहाँ पे दीपज्योति डायग्नोस्टिक सेंटर लिखा हुआ है।

खंबा है रेलिंग हैदरवाजा नजर आ रा है।

पुलिस थाना कुचामन सिटी लिखा हुआ हैं और गेट लगा हुआ हैं अंदर गाड़ी रखी हुई हैं इधर पेड़ लगे हुए हैं दीवार हैं।

एक बड़ी सी बिल्डिंग है नगर परिषद लिखा हुआ है गेट अंदर जाने के लिए दिखाई दे रहे हैं सीढ़ी बनी हुई है।

यहां पर एक गाड़ी खड़ी हुई है शटर लगा हुआ है बिल्डिंग से नजर आ रहा है सीढ़ी बनी हुई है।

कुछ घरे व्हाइट कलर के हैं।

विवेक ज्वेलर्स लिखा हैं बड़ी सी बिल्डिंग हैं खिड़किया है सटर लगी हुई हैं तार दिखाई दे रहे है।